ऊपर से अंदर की ओर आती हुई ये एक खाई है सामने एक पेड़ है और ऊपर जो है टॉप पे एक नीला आसमान है।

और ये अभी रात का समय है रात में ज्यादा जो कसरत करने वाले लोग--

ये खेल हम बचपने में खेलते थे लेकिन अभी बड़े हो चुके हैं सारे बच्चे भी बड़े हो चुके हैं।

बहोत अच्छा यहां पे ज्वेलरी दिखाया दे रहा है।

अगला जो चित्र हमें दिया गया है वह चित्र एक मंदिर का है इस मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति रखी हुई है।

तीनों मूर्ति बहोत ही खूबसूरत है।

पहना के रखे है सभी भगवानों को।

इसमें बहोत सुंदर सा एक दृश्य नजर आ रहा है।

और ये आसपास कोई भी नहीं है टेबल काफी बढ़िया से लगाए हुए--

इस घर में बहोत सारे बगीचे बना के रखे हैं।

और कस्टमर के लिए भी दो चेयर रखी होंगी सामने।

टेबल पे बहोत सारे आकर्षक जो शील्ड वगैरह रखे हुए--

या फिर इस्तेमाल करने योग्य इसे बनाया जाता है।

कहना चाहिए ये एक कुआं जैसी आकृति का यहां पे गहरा सा गड्ढा है।

और जो बैठने का सोफा है वो लाइट पिंक कलर का --